पार्क दिख रहा है जिसमें एक बच्चा पाइप से पानी डाल रहा है।

ए_सी लगा हुआ है पंखा लगा हुआ है।

तालाब दिख रहा है हरे हरे कुछ घास दिख रही हैं।